ये एक साड़ी का दुकान है जिसमे बच्चे का कपड़ा लेडीज का कपड़ा एवं विभिन्न प्रकार के पहनने का सामान इसमें मिलता है| एक प्रकार का मॉल का काम कर रहा है।

मुकुट चुराए है मूर्ति के बगल में।

सामने बराती के लिए चेयर लगाया हुआ है।

आइ.टी.आइ. कॉलेज या फिर किसी प्रकार का हो सकता है ।

इ कोनो चट्टान है। इस चट्टान पे बहुत व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है और ये बच्चे चट्टान पे जाने का प्रयास कर रहा है।

मंदिर इसको कहते हैं हिन्दू का धर्म का बहुत ही मंदिर दिख रहा है उसमे चारो तरफ लाइट लगी हुई है स्ट्रीट लाइट लगी हुई है।